इस तस्वीर में मुझे सिटी सेंटर सैलून दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे नयनसुख का बोर्ड दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ मशीन दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे एक टेबल दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे एक खिड़की दिखाई दे रही है।

यहां मुझे एक दरवाजा दिखाई दे रहा है।